एक आदमी दिख रहा हैं जिसका सिर दिख रहा हैं सिर--

ये मशीन है जो चलने से वेट कम होता है वो वाली है।

है और ऊपर में पत्ते हैं फिर एक बैठने वाला है जो वाइट कलर का है |--

जो रेड कलर का है फिर उसके गले में कुछ बांधी हुई है ब्लैक कलर की हाथ में बैंगल्स पहनी हुई है।

इस इमेज में जो मुझे दीवार में ब्लैक कलर दिखा है जिसमें वर्क लिखा हुआ हैजो रेड कलर का लिखा हुआ है यहां पे एक आदमी है।

जो बनियान पहना हुआ है पैंट पहना हुआ है और पीछे से बॉडी शो कर रहे हैं।

रेड कलर जो पिलर में जी आसमानी कलर का फिर उसके बाहर छोटे-छोटे गमले में छोटे-छोटे पेड़-पौधे रखे गए है पीछे में बहोत बड़ा पेड़ दिख रहा है।

ये कुछ बच्चिया है जो गोंद लेकर कुछ बना रही है कुछ बच्चे जो साइड में कुछ बना रहे हैं ।

पेड़- पौधे देख रहे एक छोटा- सा घर है इसका एक दरवाजा जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ओर ये घर का कलर --

टुटोरिअल लिखा हुआ है एडमिशन ओपन लिखा हुआ है।

और येलो कलर काफी साइड में कुछ फोटो दिख रहै हैं जिसमें मल माला टंगी हुई है यहाँ पे टी_वी दिख रहा है नीचे अवार्ड है तो ऊपर लाइटे जल रही है वाइट कलर की --

टाइल्स लगा हुआ है फिर पाइप का दीवार है जो बना हुआ फिर एक आदमी अंदर जा रहा एक औरत है जो साड़ी पहनी हुई हैं येलो कलर की--

ये इमेज में मुझे एक हॉल दिख रहा है जो इशू का पेन्डेन्ट दूर में दिखाई दे रहा है बहोत सारी लाइटें जली हुई हैं झुमरे भी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे एक हॉल दिख रहा है जिसमें बहुत सारे कारपेट बिछे हुए है जैसे ब्लू ऑरेंज पर्पल रेड --

हल्का फीका ग्रीन दिखाई दे रहे फिर साइड में प --

इस इमेज में मुझे एक टावर दिख रहा है जो हल्के --